इसमें एक छोटा पौधा भी है।

जहां पर छोटी टेबलें लगी हैं आमने सामने चेयर है नीचे फर्श भी काफी सुंदर और साफ --

और कुछ छोटी छोटी सीढ़ियां भी बनी हुई हैं और पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहा--

और लाइटें भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है फर्श भी काफी साफ और चमकीला दिखाई दे रहा है।

और अंदर भी स्टूल टेबल वगैरह चेयर वगैरह हैं और एक लड़का बाहर की तरफ से अंदर की ओर देख रहा है कुछ --

और ये पत्तों से ढका हुआ है कुछ अंदर भी काफी दूर तक नजारा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में किसी पार्क का फोटो है।

लोग पेड़ की छांव में बैठे हैं पेड़ भी काफी बड़ा और--

छोटे-बड़े टेडी बीयर्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ लाल कलर में इन पर एल_ओ_वी भी लिखा हुआ है।

इस फोटो में कोई लख्यानी ट्रेनिंग कंपनी का नाम है जो कि पीले कलर में लिखा है और उन्होंने अपने नंबर भी लिखे हैं।

अलग समान मिलते है अंदर भी काफी थैलियां पैकिंग करी हुई है छोटा पंखा भी लगा है एक आदमी फोन पर बात कर रहा है।

यह किसी पानी के बांध का फोटो है जहां पर बांध के ऊपर काफी सारे लोग --

इस फोटो में दो व्यक्ति है।